हां ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा शोरूम है कपड़ों का इसमे बहुत अच्छे से लाइटिंग की हुई है फर्श बहुत अच्छा बना हुआ है और इसमे डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छे से किया हुआ है कपड़ों का।

ये एक फोर व्हीलर पेट्रोल टेन्क है और ये बहुत बड़ा पेट्रोल टेन्क है जो की ब्लू एण्ड व्हाइट कलर का है यहाँ पे काफी सारी बसेस खड़ी हुई है दो बसेस व्हाइट कलर के है और यहाँ पे पेट्रोल की तीन से चार मशीने है।